और उनके चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं पेड़ में लोहे की जाली लगी है।

सभी बच्चे आमने सामने कराटे कर रहे है क्लास में बहोत सारी खिड़कियां है और पंखे लगे हुए हैं।

और पास ही खम्बा लगा हुआ है।

आस-पास पेड़ लगे हुए हैं और बोहोत सारे घर बने हैं और बंबू लगा हुआ है।